भारत पेट्रोलियम टी_पी_डी फ्यूल सेंटर चौबीस घंटे सेवा उपलब्ध राइट नाइट टाइम ---

एक नदी है बीच में एक पठार जमा हुआ है जिसमे कुछ हरे भरे पौधे भी उग रहे हैं और यह बरसात का टाइम और ये जगह गीला पड़ा हुआ है।

दुकान है एक मेनरोड है एक साइकिल है कुछ थमशप का कुछ प्रचार भी---